ऊपर सजावट है लाइट है और स्टेज पर एक काउच रखा हुआ है जिसका नीला और सफेद कलर है।

कई सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं। कुछ बैठे हुए हैं। कुछ मछली की खरादारी कर रहे पीछे कुछ --

यह एक स्टेडियम है। स्टेडियम में पिच बनी हुयी है। पिच पर विकेट लगे हुए हैं कुछ लोग वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं।

गिट्टी की गयी है। ऊपर साफ आसमान है।

ये एक बिल्डिंग की फोटो है। बिल्डिंग के नीचे जो है हरा घास का मैंदान है और पीछे हरे-भरे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

और भी बहुत सारे अलग अलग नसल के घोड़े हैं।

उसके पीछे पेड़ है जिन पर हरियाली लगी हुई है लाइटें लगी हुई है।

दुकान के सामने काफी सारा मालवा पड़ा हुआ है ऊपर साफ आसमान है हरयाली है।

यह एक शॉप की फोटो है। इसमें अलग-अलग प्रकार के आइटम हैं । कुछ सामने दिख रहे हैं कुछ पन्नी में पैक रखे हुए हैं।

ऊपर पेड़-पौधे हैं जे हरे-भरे है। नीचे एक घास का मैंदान है और उसके पीछे --